गाइस यह किसी अ रेस्टोरेंट के अंदर का फोटो है और यहां पे यहां एक बहुत बड़ा गेट है जो वाइट कलर में है बिल्कुल और दोनों तरफ हैंडल है पकड़ने का गेट का।

यहाँ पे एक शोरूम है गाइज और ऊपर में एक पोस्टर लगाया गया है जो बिलकुल रेड कलर का है।

फूल वगैरह नजर आ रहे हैं गाइस और यहां पे हरे भरे पेड़ पौधे नजर जंगल नजर आ रहा है गाइस । आसमान में पूरा बादल नजर आ रहा --

हम्म अन्दर से रिफ्लेक्ट कर रहा है गाइस और काफी धुंधला नजर आ रहा है जो बिलकुल डार्क --

हेलो गाइस यह भी एक रेलवे स्टेशन का फोटो नजर आ रहा है गाइस और यह जो फर्श है यह मार्बल का बिल्कुल मार्बल चिपका हुआ है | उसमें ग्रे कलर का और लाइटिंग बिल्कुल ब्लू कलर का पर रही है यहाँ पे ।

और उसके अटैच में एक पोस्टर लगा हुआ बिल्कुल ब्लू कलर का और उसके जस्ट सामने में ग्रीन पूरा नजर आ रहा है पेड़ पौधे और ऊपर से बिजली की वायरिंग --

एक व्हाइट कलर का लक्जुरिएस कार दिख रहा है गाइज और इसके जस्ट --

साइड में ए लेफ्ट साइड में एक और अं ग्रीन कलर का जो पेड़ पौधा है उसकी पत्तियां नजर आ रही हैं और कुछ येलो कलर में भी पत्ती नजर आ रही है गाइज़ ।

हेलो गाइस यह मिट्टी का हवन कुंड है। गाइस इसमें गेंदा का फूल से इसको माला बनाके इसको इसके ऊपर चढ़ाया गया है।

और इस साइड में एक यहां पे ये लैपटॉप सिस्टम नजर आ रहा है गाइस और कुछ टीवी भी नजर आ रहा है। कुछ साम --